इसी मशीन के दूसरी तरफ एक आदमी जमीन में बैठा हुआ है इस मशीन पर कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है।

एक गुलदस्ता लाल हरे और नीले रंग का दिखाई दे रहा एक पूरा नीले रंग का है एक पूरा गुलाबी रंग का है एक और है जो के सिल्वर और ब्लू कलर का दिखाए दे रहा है यह गुलदस्ते काफी रंग-बिरंगे है।

फ्रिज के बगल में लोहे का रैक रखा हुआ है जिस पर कुछ सामान टंगा हुआ है और कुछ रखा हुआ जिनमें से बिस्किट नमकीन चिप्स पापड़ मैदा सूजी और भी काफी सारा सामान रखा नज़र आ रहा है।

किसी गार्डन के बीच में एक हाथी के ऊपर फव्वारा चलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ हाथी सफ़ेद रंग के पत्थरो से बनाया गया हाथी के ऊपर एक छोटा-सा बच्चा भी बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

और एक बड़ी सी रोड दिखाई दे रही है जिसके सामने एक बड़ा-सा बैंक खुला हुआ दिखाई दे रहा है जोकि एक बड़ी सी वाइट कलर की बिल्डिंग तक खुला हुआ है उसके सामने कुछ गमले भी रखे वे दिखाई दे रहे है जिस पे कुछ फूल खिले हुए दिखाई दे रहे है।

नदी के एक किनारा एक बड़ा-सा चबूतरा बना हुआ है जिस पर बडाँ सा लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है बगल मे एक और चबुतरा नज़र आ रहा है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

किसी नदी क के किनारे दिखाई दे रहे है नदी के दूसरे तरफ एक पूल दिखाए दे रही है जिस पर चढ़ने के लिये सीढ़ियाँ बनाई गई है कुछ घाट भी बने हुए नज़र आ रहे है जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है।

दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है एक ब्लैक कलर की बाइक भी दिख रही है और बगल में कुछ पीले रंग की बिल्डिंग भी दिख रही है।

रेस्टोरेंट के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर बगल में कांच की दीवार बनी हुई नज़र आ रही जो कांच का स्वागत छक छज्जा लगा है।

गार्डन के बाहर पेपर ब्लॉक भी लगा हुआ है गार्डन के सामने काफी बड़ा रेस्टोरेंट है जोकि ब्लैक कलर का है जिस पर काफी सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।